खड़ा है जिसने मास्क पेहना हुवा है मंदिर बहुत पुराना हो चूका है।

इनके आसपास फूल मालाएं लगी हुई है राधा कृष्ण के सर पर मोर मुकुट है और इसके आसपास लाईटे लगी हुई है।

यह व्यक्ति अपना फोटोशूट करवा रहा है जिसने अपने हाथो में वोच पहनी है तथा एक चेक्स शर्ट ब्लू एंड वाइट पहना है।

यहाँ सभी ओरतो और पुरुषो के हाथो में एक बुक्स है। और सभी ने सफ़ेद कलर की पोशाक पहेनी हुई है।